जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने जो चित्र है एक ये मैदान का चित्र है जो पहाड़ों से घिरा हुआ है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे है यानी जहां पर बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम किया जाता है।

बहोत ही सुंदर व्यवस्था की गई है बहोत ही आकर्षक और सुंदर सुंदर सोफा सेट कुर्सी लगी गई है जो व्हाइट कलर यानी सफेद कलर से--

उम्म उनको नजर नहीं आ रहा है दुकानदार तक भी यहां पर नजर नही आ रहा है एक काउंटर लगा है काउंटर के सामने कुर्सी लगी है।

क्योंकि उसका गेट चौड़ा बनाया गया है ताकि इकट्ठी मात्रा में ढेर संख्या में लोग वहां से गुजर सकें और एक उसी के बगल में छोटा गेट बनाया गया है।